बहोत सारा लाइट्स लगाया गया है हैदराबाद में ये है।

और ऊपर में एक बेड है।

और उस बेड का--

एक ए_टी_एम है इंडिया पोस्ट का।

और शीशे का दरवाजा है अंदर मे ए_टी_एम दिख रहा है।

जो बहुत अच्छे से उन्हें सजाया गया है फूल से।

और उनके ऊपर में बहुत--

यहां किसी का भी फेस नहीं दिख रहा है सिर्फ साधु का दिख रहा है।

चेयर वेयर है सोफे हैं।

हॉस्टल का बॉयज हॉस्टल से बात कर रहा है और एक नीचे से बात कर रहा है।

के अंदर सी_सी_टी_वी कैमरा है।

यह शोरूम है शोरूम में ओला का स्कूटी रखा गया है।

बहुत सारे स्टूडेंट टीचर को पैर छू रहे--

दुकान में एक एच_पी का लैपटॉप है।

चार लोग व्हाइट येलो कलर और व्हाइट कलर का पहने हुए जो मोमबत्ती या दिये मोमबत्ती दिखा रहे--

और बगल में एक रेड कलर का कुछ दिख रहा है।

यहां पर आधार पैन कार्ड पासवर्ड राशन कार्ड वाहन टैक्स ऑनलाइन फॉर्म बहुत सारे होते हैं।

और बगल में सैलून लिखा है और कवाड़ी है जो लगाया गया है लकडे का।

और एंटीने से तार निकाल कर एक घर में ले के आया गया है।

और लोहे का ये टावर है बहुत सारे लोहे लगाए गए हैं।

दुर्गा मैया का मंडप है।

और ऊपर में येलो कलर का पंडाल है बहोत लाइट बती से सजाया गया है।

और बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं।